जो कि अपने वाहनों को लेने आए हैं यहां पर ज्यादातर दो पहिए वाहन हैं।

इस चित्र के अंदर हम एक युवा को देख सकते हैं जो कि एक पार्क में है।

इस चित्र में हमें किसी खाद्य पदार्थ की बनने की एक फैक्टरी दिखाई दे रही है।

जो की अच्छे से साफ कर हुआ है और यहां पर हम एक महिला का--

व्यू दिख रहा है इस चित्र में बच्चे अपने कक्षाओं के यो ओर जा रहे हैं।

एक गुलाबी कलर की बोतल है वो अपने कॉपी में ध्यान पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहा है।